दीवाल मे एक ए_सी है जो सफेद कलर का है।

रिफाइन तेल का भी डब्बा दिख रहा है।

पीछे बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है।

मूर्ती सोना कलर का है।

यहाँ बहुत सारा टेम्पू दिख रहा है।

यह रोड है यहां साइड में बहुत सारा बिल्डिंग है।

एक बिल्डिंग ब्लू कलर का है।

बहुत सारा आदमी रोड किनारे बैठा हुआ है एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा है।

यहां दो तीन पुतला दिख रहा हैं जो लड़की का है उसमें लड़की का कपड़ा पहनाया हुआ हैं।

बगल में बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

नीचे गुलाबी कलर का दर्री बिछाया हुआ है।

बगल में बहुत सारा आदमी भी खड़ा है।

बहुत सारा खंबा भी दिख रहा है बगल में बहुत सारा पेड़ है।

ऊपर मे एक ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ है जिसमे ब्रोदर लिखा हुआ है।

यहां बगल में दीवाल है जो कलर किया हुआ है।

यह दुकान है यहां बाहर में केला का पत्ता दिख रहा है जो बहुत हरा भरा है।

यहां बहुत सारा कुर्सी है उसमे पर्दा ढका हुआ है।

यहां बहुत सारा आदमी भी दिख रहा है।

यह चूड़ी दुकान है यहां बहुत सारा लाइट दिख रहा है जो सफेद कलर का है।

लाल कलर का टमाटर बहुत सारा है।

यहां बहुत सारा हरा हरा टमाटर भी है।

नीचे बहुत सारा आदमी है।

यहाँ एक औरत का हाथ में एक अगरबत्ती दिख रहा है।

यहा नीचे बहुत सारा पौधा है।

एक आदमी भी दिख रहा है।

ऊपर मे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है।